बहुत सारा कार्टून बॉक्स पर दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बैंबू घर दिखाई दे रहा है।

नीचे में एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा आदमी भी दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड बहुत सारा कार दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा लाइट भी दिखाई दे रहा है।

रूम के अंदर में बहोत सारे टेबल दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का चेयर भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में एक बड़ा सा लाइट भी दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।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

घर मे बहुत सारा खिड़की दिखाई दे रहा है।

पे एक ए_टी_म दिखाई दे रहा है।

हॉल में बहोत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

एक स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा वाटरमेलन भी दिखाई दे रहा है।

इनका साइड में एक फुटपाथ दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड का किनारे में गैलरी भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में एक गेट दिखाई दे रहा है।

साइड में एक बहुत सारा बाइक भी दिखाई दे रहा है।

दो चेयर भी दिखाई दे रहा है।

दुकान का अंदर में बहोत सारा कार्टून बॉक्स दिखाई दे रखा है।